एक सड़क दिख रही है पक्की सड़क में पानी भरा हुआ है दो कुत्ते दिख रही है रेड और सफ़ेद कलर के एक ट्रक दिख रहा है जो ग्रीन कलर का है ।

खेत में हरियाली छाई हुई है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है पेड़ के ऊपर एक टीला है जिसपे पेड़ अ पेड़-पौधे लगे हुए है आसमान नीला दिख रहा है।

दीवाल है दीवाल का कलर ग्रीन है दीवाल में एक टैटू बना हुआ है।

दो मजदुर है ए छोटी- सी गाड़ी लिए हुए उसके ऊपर कुछ लादे हुए ले जा रहे हैं।

फ़ेडरल बैंक के बाहर की तस्वीर है।

और नीचे ग-घास दिख रही हैं।